एक बिजली का खंभा है यहां पर आदमी--

ये लड़के यहां पर फोटो खींचा रहे हैं यहां कुछ छोटे बच्चे भी खड़े हैं।

ये तस्वीर एक पारक की है पारक में बहोत सारी ह--

जहां पर बहोत सारे पेड़ हैं।

पारक मे बहुत सारे बच्चे प्राणायाम कर रहे--

बिजली के तार भी दिख रहे--

ये तस्वीर एक कार की है कार का रंग लाल है।

बहुत सारी हरी मिर्चों की है।

ये तस्वीर एक मंदिर जैसी लग रही है।

यहां पर बहोत अच्छी सजावट करी गई है।

इसमें बहोत सारा सामान भरा हुआ है।

गार्डन में से फुव्वारा चल रहा है उसके पीछे काफी लड़ियां लगी हुई है।

यहां पर बड़े बड़े पत्थर एक गार्डन में--

पास में छोटे छोटे पौधे भी हैं।

ये तस्वीर कुछ डॉक्टरों की है।

जिम में बोहोत सारे मशीने रखी है।